और दीवाल में वन टू थ्री लिखा हुआ है।

एक सूप है उसके ऊपर एक ब्रश रखा हुआ है।

गेट पे लिखा हुआ है सनसनी प्ले स्कूल ।

सामने के साइड में एक दरवाजा है।

तस्वीर एक सड़क की किनारे की है।

यहां पे बहोत सारी लाइटे भी जल रही है।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

पीछे के साइड में एक बाइक और एक बस दिखाई दे रहे--